रोड पर एक साइकल पड़ा हुआ नजर आ रहा है।

यह पिक्चर हमें एक सब्जी मंडी की नजर आ रही है।

बेंच भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

आस पास पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें एक वैन दिखाई दे रही है।

यह पिक्चर हमें एक ए_टी_एम की नजर आ रही है।

बाहर हमे बहोत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही है।

आस पास लाइट्स चलती हुई नजर आ रही है।

पास में हमें कुछ गमले भी पड़े हुए दिख रहे हैं।

आसपास हमें पेड़ भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर हमें एक बार काउंटर दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें अलग अलग तरह की--

यहां पर हमें बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

यहां पर हमें एक मोर भी नजर आ रहा हैं।

यहां पर हमें मिरर और वॉश बेसिन भी दिखाई दे रहा है।

तेज पर हमें एक सोफा रखा हुआ नजर आ रहा है।

ऊपर शेड लगा हुआ नजर आ रहा है।

ऊपर हमे एक ए_सी और बहोत सारे पंखे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

आसपास हमें पेड़ भी लगे हुए नजर आ रहें हैं।

टेबल के आसपास कुछ सोफे लगे हुए नजर आ रहे हैं।